और ऊपर सीढ़ी भी लगी हुई है और हर तरीके के बोर्ड रखें हैं वायर रखी है।

और एक स्टूल रखा है और यहां पे पिज्जा बर्गर और टिक्की उनके सबके पोस्टर लगे हुए हैं और टाइलें लगी हुई हैं।

हूं और यहां से लोग कुछ अंदर जा रहे हैं और यहां पे एक इंजन खड़ा है और पेड़ भी लगे हुए हैं यहां पे बहोत सारे।

चुनी की ये परचूनी की शॉप है और यहां पर बहोत सारे डीब्बे रखे हुए हैं और नहीं परचुन्नी की नहीं है ये फोन की दुकान है मोबाइल की--

सामने बच्चों की ड्रेस हैं जिसमें टॉप है स्कर्ट है जींस है इस तरीके के और कुछ रैक में भी कपड़े अं लगे हुए हैं और ऊपर लाइटें जल रही--

और वो लोग इन लोगों को खिला रहे हैं तो यह लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी।

और कुछ सामान भी रखा है और वो आदमी कुछ सामान निकाल रहा--

जो दुकान में से कुछ सामान ले रहे हैं और एक ही यहां पर काउंटर है जो रेड कलर से पूता हुआ है।